कंदमूल है गाजर है गिल्की है।

वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए है ये एक व्यक्ति ऑरेंज और वाइट कलर की शर्ट पेहने हुए है।

मुझे इस तस्वीर में एक कार का बर्कशॉप --